जिसमें कुछ लोग अह खाना खाते हुए नजर आ रहे है।

और इस पिक्चर के के इसमें देखा जा रहा है कई ये रिक्शे वगैरा लोग लेके खड़े हैं।

तरह तरह की अ मिठाइयां वगैरा भी इसके अंदर हो सकती हैं।

और हरे हरा भरा पार्क नज़र आते हुए है।

नजर आ रहे हैं यह शायद बाहर कंट्री की भी इमेज हो सकती है।

और ये इनके बाहर कंट्री का ग्राउंड नजर आ रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक बुके की शॉप है।

दूसरा शॉप भी दिख रही है और आस पास काफी--